आठ फोर फोर वन ट्व वन और इसके बोर्ड पे एक ग्रील है और ग्रील किस्म के बोर्ड लगा हुआ है।

यह रेस्टोरेंट है यहाँ पे लोग इस रेस्टोरेंट में लोग आकर अपना खाना खाते हैं तरह-तरह का व्यंजन का आनंद उठाते हैं।